सामने रेड कलर का टेंट लगाया बहुत खूबसूरत टाइल बिछी हुई--

सामने लेमिनेशन की मशीन रखीं हुई है एग्जास्ट फैन भी लगा है।

यहां पर कोई मंदिर भी चमक रहा है। बोर्ड लग रहा है।

यहां पर काफी खूबसूरत नजारा है।

यहां पर मछलियां बिकती है इसके बराबर नरकाटा भी रखा है।

सामने कोई बंदा भी खड़ा होया है।

यहां भी तरह तरह की पेंटिंग लगी हुई है।

ये कोई कम्प्यूटर कोचिंग --

काफी अच्छी सुविधा है यहां पर--

यहां पर रेड कलर की और वाइट कलर की चद्दर बिछी हुई है।

बड़े ग्राउंड में आरे वाला भी है।